यह एक बड़ी फ़ैक्ट्री है।

काँच की जारों में खाने का सामान है।

रोड पर एक मोटरसाइकिल खड़ी है।

मंदिर में एक झूला डला है।

जिसमे श्रेया फोटोस्टेट लिखा हैं।

काफी सारी बड़ी-बड़ी मशीने रखी हैं।

पानी के बगल में रेत है।